एक्चुअली ये तालाब नहीं हो सकती क्युकी इसके ऊपर पुल है तो ये नदी होगी उम कन्फर्म है ये।

ये तस्वीर एक आँवला वस्त्रालय का है।